ये एक ऑटो की कंपनी है जिसमे बहुत सारे ऑटो खड़े हुए खड़े हुए हैं और यहा पर एक सामने बहुत बड़ा काँच लगा हुआ है | उसके अंदर बहुत सारे फूग्गे भी लगे हुए हैं | ऑरेंज ग्रेन और वाइट --

और जिसमे शॉपिंग स्टोर लिखा हुआ है अंदर बहोत सारी चीजें रखी हुई है जिसमे कुर्सी भी ----

यहाँ बोहोत सारी चेयर भी है। एक वार वेषन लगा हुआ है जिस में एक नल भी है। एक टेबिल भी है और जो दीवार जो दीवार है। उस में फ्लॉवर बने हुए है और वाइट कलर की दीवा--

एक शटर है जो ब्लैक कलर की है। बोहोत सारी गाड़ियाँ और साइकल भी यहाँ खड़ी हुई है। और यहाँ पर बोहोत सारे डंडे भी लगे हुए है। जो ब्लू कलर के है।

यह बज यह बजरंग एग्रो एजेंसी है जहां बहुत से लोग भी खड़े हुए हैं ऑटो भी है ट्रक भी है गाड़ी भी है और जहां बजरंग एग्रो एजेंसी लिखा है वो बैनर का कलर ब्लू है।

और यहाँ ऊपर सीलिंग वाइट कलर की है और पिंक कलर से पट्टा दिया गया है ।

ये एक स्विमिंग पूल है। यह एक झूला भी लगा हुआ है जो फिशल पट्टी वाला है। और जिसमे बहुत सारे कलर भी हुए है। ब्लू येल्लो औ ऑरेंज --

ये एक पार्लर जिसमें बोहोत सारी कुडसिया रखी ग हुई है। और नीचे टाइल्स लगी हुई है। सामने एक आईना लगा हुआ है। जिस के सामने एक लेडी बैठी हुई है मास्क लाग के ।और उस ने हेयर स्ट्रेट करवाया हुआ है। जिस क में जो ब्लैक बाल है।

ये एक रोड है। जहाँ एक ऑटो खडा हुआ है। और ऑटो मे बोहोत सारे डेकोरेशन किए गए है। ऑटो में ब्लू कलर के डेकोरेशन किया गया है। और उस में बोहोत सारे छोटे-छोटे फूल बनाए गए है